यह बिल्डिंग को भी लाइट से सजाया गया है।

में बहुत सारे आदमी हैं फर्श का कलर हरा है और यहां ऊपर में वेलकम लिखा हुआ है।

बस में बहोत से लोग चढ़ रहे हैं और बहोत से लोग जा रहे हैं।

दूसरे टेबल के ऊपर एक जग रखा हुआ है।

दो सोफे भी हैं सोफे के पीछे एक पर्दा लगा हुआ है।

और एक प्लास्टिक का टोकरी रखा हुआ है।

अंदर में एक टेबल है जिस पर एक पोस्टर लगा हुआ है जिस में माजा लिखा हुआ है।

गेट का थोड़ा दूर में एक आदमी खड़ा है और दूर में भी दो आदमी खड़ा है।

यह एक जगह है जहां पर कोई पार्टी हो रहा है।

ऊपर में बहुत ही फूल से सजाया गया है और रेड कलर का पर्दा लगा हुआ है।

और पानी भी दिख रहा है।

दीवाल में सबसे ऊपर में एक लाइट भी लगा हुआ है।

और कुछ बड़े पेड़ भी है।

और आगे में एक व्हाइट कलर का टेबल लगा हुआ हैं।

इसके ऊपर मैं भी एक सामान रखा हुआ है।

और सूर्य भगवान भी दिख रहा है।

यहां पर दो आदमी बाहर मे खड़ा है जिसका हाथ मे एक कागज है।

कुछ गाड़ी घर के अंदर है।

यहाँ पर बहोत सारे आदमी औरत बच्चें है।

गेट को फूल से सजाया गया है।

यह एक स्कूल है जिसका कलर यलो और वाइट मे है।

टेबल के ऊपर ग्लास और बोतल है।

और उसके साइड में एक होटल रिंकिनी है।

एक आदमी गुलाल से सजा रहा है।

जिस पर मिट्टी के बने समान रखे गए हैं।

साइड में एक छोटा सा पोस्टर है।

दो बच्चे आगे में बैठे है जो एक बच्चा येलो कलर का कपड़ा पहना है।